ये तस्वीर एक ढाबा का है।

इस तस्वीर में एक लड़की दिखाइ दे रही है।

कुछ लोग यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

जोकि गर्भ गृह में माता दिखाई पड़ती हैं।

जहां की तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां ऊपर मे काफी सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

यह एक कराटे एकेडमी का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां की कोई नहीं है।